बिरयानी रखा हुआ है रंग दिख रहा है चावल दिख रहा है बना बिरयानी तैयार है ।

एक आदमी बाइक को अभी-अभी लगा रहे हैं एक्सिस बेंक का भी है यहाँ पे ए.टी.एम. ए.टी.एम. के अंदर लोग हैं और पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत सारा सामान रखा हुआ है बत्ती जल रहा है कलरफुल है।

आनंद ले ले रहा है पार्क टाइप का है देखने से।

ऊपर वाले बल्ब का चिना नीचे दिख रहा है। ए.सी. लगा हुआ है दोनों साइड में और दीवार पे शीशे हैं ब्लेक कलर के शीशे दिख रहे हैबीच में कुछ सामान पड़ा हुआ है। गैलरी बहुत लंबा चौड़ा है देखने में सुंदर है टाइल्स लगा है।

ये साइज़ मिला रहा है लग रहा है की रोड पास होने वाला है नीचे ईटा बिखरा हुआ है एक स्कूटी है एक बाइक खड़ी है बगल में पेप्सी का बोतल --

बगल में ए.टी.एम. है एक बच्चा खड़ा है ए.टी.एम. के पास में ।